यहां एक पिक्चर दिखाई दे रही है यहां एक मिठाई की शॉप दिखाई दे रही है।

काउंटर के अंदर नमकीन के पैकेट रखे हुए हैं।

काउंटर के ऊपर बहोत से बर्तन रखे हुए हैं।

यह एक रात की पिक्चर है यहां पर एक लोहे का बड़ा सा स्टूल रखा हुआ है।

यहां एक पिक्चर दिखाई दे रही है यहां एक शॉप दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बिल्डिंग जैसा दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर अगरबत्ती के अलग अलग टाइप के--

प्लॉट के आसपास कुछ घर बने हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर कुछ औरतें भी खड़ी हुई हैं।

यहां पर एक ब्राउन कलर का काउंटर बना हुआ है।

यहां पर एक स्प्रे बॉटल रखी हुई है।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

यहां पर तीन लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

यहां एक सफेद रंग की कार खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहा पर एक बड़ासा फ्लाई ओवर बन दिख रहा है।

यहां पर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर पत्थर की बड़ी बड़ी चटाने है।

एक टापू पर बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक आदमी ने नीले रंग की टी शर्ट पेहनी हुई है।

यहां पर एक ब्लैक कलर का स्टूल रखा हुआ है।

शॉप के ऊपर शॉप का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।